और इसके बगल में मैदान है जिसमे हरी-हरी घास उगी हुई है।

यहाँ पर एक बड़ी-सी दो माहले की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद कलर की है।

गोपालगंज भी लिखा हुआ है इसके नीचे --

इसमें ऊपर एक पीला कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें बिहार ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है शाखा भागलपुर।

सामने साइड दो-तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

उसके बगल में गाजर भी रखी हुई है।

के अगल-बगल रेत भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक तलाब दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एम.एस. सर्विस सेन्टर लिखा हुआ है।

इसके किनारे साइड एक नाव भी दिख रही है जो की नीले और ओरेंज कलर की है।